पेंट किया हुआ है क्या क्या रास्ता है।

तीन है आदमी है बोतल है जाकेट पहने टॉप पहन मछली मछली छोटा छोटा--

गारी हैं गाड़ी के मैकेनिक बनावीत हैं चैन से--

बहुत बड़ा बंगला है बंगला में लोहा के ग्रिल लागल है पेंट कैल है अंदर चार चक्का लागल है।